यहां पर किसी शादी का कोई फंक्शन प्रोग्राम चल रहा है।

यह एक बहोत ही बड़ा सा हॉस्पिटल हमें दिख रहा हैं।

लगी हुई है और नीचे सीरियां हैं।

यह एक योगा क्लासेस है यहां पे--

यह एक बहोत ही बड़ा सा व्हाइट कलर का हमें --

पेंट ही पेंट है पेंट के डब्बे भी हमें दिख रहे हैं।

यहां पर हमें दीवाल पर एक प्रतिमा दिखाई दे रही है।

म्यूजिक सिस्टम निकिल तथा एसेसरीज के सभी सामान--

सब्जी मंडी में काफी भीड़ भी है कुछ लोग खरीदने--

यह कोई बहुत ही बड़ी सी फैक्ट्री है।